जैसे कि ट्रेडमिल साइकिल सब रखी गई है खिड़कियां जो है खुली है दीवारों का रंग जो है सफेद है।

सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है एक ऑटो रिक्शा है पीछे की तरफ हरे रंग की झाड़ियां हैं ऊपर की तरफ खुला आसमान है आसमान का रंग जो है सफेद और नीला है।

एक ऑटो रिक्शा जा रहा है लाइट के खंबे हैं ऊपर की तरफ खुला आसमान है पीछे की तरफ झाड़ियां हैं आसमान का रंग जो है सफेद है।